एल.पी. में भी भर रहा है मोटर साइकिल भी है।

और भी है सीढ़ी भी है गेट उट भी है |

बर्थडे के तरह मना रहा है बर्थडे इसमें और उ उ --

ऑपरेशन होता है | ऑपरेशन में से वहाँ जो है कोइ आदमी नहीं रहता है वहाँ पुल है | एक --

सिलेट है एक सिलेट में बहुत अच्छा लग रहा है।

एक लाइन से उस को बनया जाता है।

डिपार्टमेंट में सारा आदमी रहते है सात महल है।

और मरकरी भी लगा हुआ है | लोहा साइकिल ताईकल भी लगा हुआ है | कैमरा भी लगा हुआ है |